यहां पर एक प्लेन सड़क है जहां पर दो गाड़ियाँ दिखाई दे रही है।

प्लेट के दूसरी साइड से ग्रे कलर दिखाई दे रहा है।

बीच मे एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर की पेंट --

दो बंदे दिखाई दे रहे है जिसने एक पीले कलर की शर्ट पहन रखी है और रेड कलर की पॉलिथीन हाथ में ले रखी है।

ठेला लगा हुआ है जहाँ पर रेड कलर की टी-शर्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बोहोत सारे फ्रिज जमे हुए हैं।

सामने की और स्टेज के ऊपर काफी सारी लड़कियाँ हैं।

यह क्लासरूम बना हुआ है जहाँ पर बेंचेज लगी हुई है।

पिज़्ज़ा बर्गर एंड कॉफ़ी हाउस जिसमें निचे की और दो शटर टाइप की बनी हुई है। उस --

ने पिंक कलर की टी-शर्ट और ब्लैक --

इसी की साइड में एक सीढ़ी रखी हुई है जो लकड़ी की है ऊपर चढ़ने के लिए।

जो की लकड़ी की है और उसपे सेटिंग रह चुकी --

यहाँ पर एक तबेला बना हुआ है जहां पर ढेर सारे गाये और जानवरे बंधे हुए है।

और वाइट और ग्रीन कलर के टीन बने हुए हैं।

झूले लगे हुए हैं जो चेन से बंधे हुए हैं उस --

एक टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर काफी सारी रखी हुई है।

इसके अंदर साइड में कांच लगा हुआ है।

फैंस रखे हुए है एक --

के पास में एक खम्भा लगा हुआ है ब्राउन कलर का।

साइड में गेट खोलने का आप्शन है और दुसरी साइड में फोर जी लिखा हुआ है।

यहाँ एक ए.टी.एम. मशीन दिखाई दे रही है।